हमें यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है सफेद कलर की वॉल्स दिखाई दे रही है कैमरा दिखाई दे रहा है बल्ब दिखाई दे रहा है हमे कैप दिखाई दे रही है।

हमे यहां पर बहोत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे है हमें यहाँ पर समुन्दर दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पर बहोत सारा कचड़ा दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पर बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है हमे एक घर भी दिखाई दे रहा है टिन शेड भी दिखाई दे रही है टिन शेड जो है वो सफेद रंग की पाइप का कलर सफेद रंग के है हमे यहाँ पर गमले भी दिखाई दे रहे है।

हमें यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है हमें बहुत सारे मन्दिर भी दिख रहें हैं हमें यहाँ पर लोग भी दिख रहें हैं हमें यहाँ पर बहुत सारे पाईपस भी दिख रहें हैं हमें यहाँ पर पेड़-पोधे भी दिख रहें हैं।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

हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर सफेद कलर उसका पेट है हरी-हरी घास दिखाई दे रही है।